आसमान दिखाई दे रहा हे रेड कलर कार दिखाई दे रहा ये बहुत प्यारा नजर आ रहा हे |

ये डेरी में एक आदमी दूध डब्बे से लेकर दाल रहा हे बक्ता रेड कलर की ग्रीन कलर की ऑरेंज कलर की थीं चार बकेट में दूद लेकर अतः हे एक ओरत दूध लेनेके आया हे ठहरे हुई हे |

येलो कलर का इसके पेंट करे हुए की लाइटिंग का बी एक पेंटिंग कर कर लगी ही बहुत प्यारा शोकेस के जैस लगा कर >--

ये गोल्डन कलर का राधाम दिक् रहा हे ये घोडा नजर ा रहा हे येलो कलर का चक्रम बी नजर आ रही हे |

ये एक बहुत बड़ा जतरा डिस्टा हे ये जतरे में बहुत सरे लोग आ रहे हे बहुत पूला डेल ही ये देवल में |